यह एक झरना है जो बड़े बड़े चट्टानों से ऊपर से आकर पानी गिर रहा है।

और उसके नीचे जलाशय जैसा जमा हो गया है पानी।

यह एक घर का नजारा है।

यह एक सभा घर या रेस्टोरेंट जैसा है।

जहां पे बाहर एक बाइक लगा है और एक टेबल है उसके चारों तरफ कुर्सियां लगी है।

पर भी बहोत सारे समान है।

यहां पर बहुत सारे आदमी है और कुछ आदमी सड़क पर चल रहे हैं।

यह एक रेस्टोरेंट जैसा है।

इसके बगल में दो व्यक्ति बैठे हैं।

किताब लाइब्रेरी के छत पे दो पंखा है एक मरकरी है।

यह एक श्रृंगार स्टोर है। और बाहर में पंख लगा है।